हैं पीछे एक खंडर है।

और सब बहुत सारा रखा हुआ--

गार्डन में छोटे बड़े पौधे हैं।

और नीचे एक आदमी चट्टान पर बैठा हुआ है।

यहां एक घर का आंगन है यहां--